हैल्लो दोस्तों यह दृश्य एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के --

हेलो दोस्तों यह दृश्य किसी --

और अन्य लोग आये हुए दिखाई दे रहे है।